ये नगर परिषद सुपौल है इसमें नीचे मे स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार एक्कीस नगर प्रशिद परिषद सुपौल लिखा हुआ हैं ये तीन बिल्डिंग का हैं आगे मे ---

साईड में हरी भरी घास कितनी अच्छी पर्यावरण की लोकेशन की कितनी अच्छी फोटो है ये भाई साब।

भाईसाब ये देखिए ये आगे में खादिम सोसिट लिखा है यहा पे सभी प्रकार के जुत्ते चप्पल सेंडल इत्यादि मिलते है साइड से ये देखिए कपड़े का भी दुकान दिख रहा है।

इसका फर्स दिवाल सीलिंग व्हाइट कलर का है बीच-बीच में ब्लैक है भाई साब आप देख सकते हैं कितनी सारी लाइटे लगी हुई है कितनी अच्छी--

ये लाइन लाइन होटल टाईप का बनाई हुई है बीच में भाई साहब यह बहुत अच्छी फैमिली के साथ आप कहीं जा रहे है यात्री है सब अपना कार से बस से उतर के खा सकते है बहुत अच्छी भोजन यहाँ मिलती है।

टेबल कुर्सी लगाया गया है यात्रीगण आए केवल लिट्टी समोसा वगैरह जो भी खाना है जिनको स्पंज काला मिठाई राजभोग राजशाही सब बलसाही सब खा सकते है ।

ये आप देखिए गाड़ी पार्किंग के लिए कितनी अच्छी बनाई गई है व्हाइट गाड़ गाड़ी लगी हुई है पीछे कितनी सारी वृक्ष लगाई हुई है पर्यावरण का कितना ख्याल रखा गया है।

यहाँ पे अपनी फेमली के साथ आ के रेस्टोरंट में तरह-तरह के भोजन इत्यादि केक वगेरा पिज़ा बर्गर चिकन चीली चिकन नान चिकन मिस्टान छोले भटूरे पावभाजी कई प्रकार के इत्यादि होती है सारी खा गए यहाँ पर बहोत अच्छी टेस्टी खाना मिलता है ।